किसी मंदिर की तस्वीर दिखाई दे रही है।

एक ओर पुरुष और दूसरी ओर महिलाएं बैठी हैं।

बहुत हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

टोबरियां शायद प्लेट्स में बंधी हुई पैक दिखाई दे रही--

सफेद रंग की साड़ी और दूसरी ने सफेद गाउन पहना मुं--

ए_टी_एम के बहार की तस्वीर दिखाई दे रही--

एच_डी_एफ_सी बैंक के बाहर की तस्वीर दिखाई पड़ रही है।

यह तस्वीर किसी पार्क में एक रास्ते की दिखाई दे रही है।

चेयर का रंग हरा लाल पीला दिखाई पड़ रहा--

जिसमें एक नाई एक व्यक्ति के बाल काटता हुआ नजर आ रहा--

तो कई और लोग अपनी बारी आने का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

दोनों दुकानों के दरवाजे शीशे के बने हैं।

येह तस्वीर एक सब्जी मंडी की तस्वीर दिखाई दे रहीं हैं।

दुकान के बाहर की तस्वीर दिखाई पड़ रही है।

पीछे एक सफेद रंग का सोफा भी दिखाई दे रहा है।